इसमें ब्लैक कलर का एक कैप और एक चश्मा भी लगाया हुआ है।

जो की काँच के अंदर रखी हुईं हैं।

इस पहाड़ के नीचे काफी सारे मकान दिखाई दे रहे हैं।